यहां पर एक बड़ा सा स्टेज लगा हुआ है इसको बहुत सी लाईटें भी लगी हुई दिख रही है।

यहां पर कुछ लोहे की सरिया रखी हुई दिख रही हैं।

व्यक्तियों का आवागमन होते हुए दिख रहा है।

यहां पर नदी के किनारे पर बहुत से लोग खड़े--